सीलिंग पे लाइट्स टिकते हैं।

अलमारी पर बहुत सारे फ्लावर वर्सेस डेकोरेट करके दिखते हैं।

पार्किंग में बहुत सारे कार्स दिख रहे हैं।

इधर एक आदमी खड़ा रहा है।

इस पिक्चर में एक स्कूल ऑडिटोरियम दिखता है।

लोग बैठ के है चेयर्स पर।

इसमें बहुत सारे ब्रांड के साइकिलस ठहरा करके है।

इस साइकिल्स में बहुत सारे कलर्स दिखते हैं।

दीवाल के बाजू दो साइकिल दिख रहे हैं।

सामने ड्राइवर खड़ा रहा है।

उसमें बहोत सारे फ्लोर्स दिखते है।

ब्राउन कलर में एक बिल्डिंग दिखती है सामने मिरर का डोर दिखता है और बालकनी दिखती है।

सीलिंग में बहुत सारे लाइट्स दिखते हैं।

बहुत सारे स्तंभ दिख रहे है।

बच्चे चार्ट पर पेंटिंग करते हैं।

इस पर वर्कर्स काम करते हैं।

एक लड़की फोन बात करती है बैठ के।

इस पिक्चर मे माता की मंदिर दिखती है।

फ्लोर से एक बिल्डिंग दिख रही है।

और एक आदमी सायकिल लेके ठहर के है।

ग्रह के सामने बहुत सारे लोग खड़े रहे हैं माता के प्रार्थना करते हैं।

फैंस और लाइट्स दिखते हैं।

इधर थोड़े लोग वर्क करते हैं।

दो फ्लोर की बिल्डिंग दिख रही है।

और पीछे हर भरे झाड़ दिख रहे हैं।

ऊपर लाइटिंग कलरफुल सा दिखता है।

इस पिक्चर में एक मंदिर दिखता है और मंदिर का द्वार दिखता है।

अरे पत्तों की बड़ी झाड़ दिख रही है।

और साइड पर एक कार दिखता है।

इधर एक औरत बच्चे को उठा ले को हैंड बैग पकड़ के है।

ऊपर सीलिंग सीलिंग फैन दिख रहा है।

और एक मिरर दिखता है।

बड़े से पत्ते दिख रहे हैं।